पीछे की दीवार लाल कलर की नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें बहुत सारे वॉल पे फोटो नजर आ रहे हैं ।

और एक शख्स भी दिखाई दे रहा हैं ।

बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें रखी हुई हैं।

और बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं ।

इस चित्र में हमें एक लड़का नजर आ रहा है।

और इस बोर्ड क्लब पे बहुत सारी बतखे भी नज़र आ रही हैं जो कि वाइट कलर की हैं।

और यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा हैं।

और इस बॉल में रेड कलर की बॉले भी हैं ।

एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं जो कि पीले कलर की पती हुई हैं ।

और एक शख्स कोई डोरी लेकर खड़ा हुआ हैं ।

कुछ रेड कलर के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ।

इस चित्र में हमें एक फ्रूट का ठेला नजर आ रहा हैं।

पीछे कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रही हैं।

इस चित्र में हमें बोर्ड भोपाल के बोर्ड क्लब का चित्र नजर आ रहा हैं।